यहां पे कई सारे बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

आदमी एक नीले रंग का शर्ट पहने सेल्फी ले र--

इस फोटो में बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर है।

यहां पे ऑनिडा और टाटा स्काई भी लिख--

सफेद और सीमेंट कलर के हैं।

यह एक दुकान का फोटो हैं।

स्टेशन का नाम खरियार रोड है।

स्टेशन बोर्ड के पास दो आदमी चलते हुए दिख रहे है।

जो कि एक घर को बनाये है कुछ--

यहां पे आलू प्याज गोभी रखा गया--

चार आदमी बस के पास घूम रहे हैं।

यहां पे चार पांच लोग पार्क में घूम रहे--

इस फोटो में ए मार्शल अर्ट एकेडमी का फोटो है।

यहां पे तीन पोल लगा हुआ है इस अह एकेडमी का नाम है शाओलिन मार्शल आर्ट ।

यह एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो का फोटो है।

फ्रिज में छोटे बड़े और कई कई अलग अलग ब्रांड के कोल्ड ड्रिंक रखा गया है।

कार्टून में भी बहोत सारे चीजे रखा गया है।

सिस्टम के आगे एक नीले रंग का चेयर रखा गया है और एक--

मोटर साइकिल के सामने एक आदमी ठेले में फल फ्रूट बेच रहा है।

फाउंडेशन डाल रहे हैं और एक आदमी सफेद रंग का शर्ट पेहने लेबर को कम बता रहा है।

यहां पे बहोत सारी महिलाएं पूजा करने आई है।

फिश एक्वेरियम एंड पेट शॉप यहां पे बहोत सारे--

जहां पे महिलाएं भी खड़ी है महिलाओं के साथ कितने सारे पुरुष भी खड़े हैं।

उम ए_टी_एम बैंक ऑफ इंडिया का है।

और कई सारे पेड़ पौधे लगाए गये है।

यहां पे तीन बड़े बड़े सफेद रंग के बिल्डिंग खड़े किए गए हैं।

यहां पे एक ग्राहक बाहर खड़ा हुआ है।

दुकान के अंदर एक ग्राहक स्टूल में बैठा गया है।

इस फोटो में एक फूलों से सजाया हुआ मयूर है।

इस मयूर को सफेद रंग से--